उसे ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ व्यक्ति--

जैसा आगे कर रही हैं वैसे ही बच्चे कॉपी करते दिख रहे हैं।

बर्तनों के सेट्स यहां पर हर तरह के चस्पू--